हर लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारी मुर्गी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर दिख रहे है।

काउंटर पे छोटे से डब्बे में एक फूल रखा हुआ हैं।

यहां बहुत सारे बेंच तथा डेस्क लगे हुए हैं।

यहां एक पोस्ट में फर्स्ट चॉइस ड्राइवोन ऑटोमोबाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर किसी रूम के अंदर बैठे विद्यार्थो की है यहां विद्यार्थी परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं।

नदी के अंदर दो भैंसे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक पॉपलिन जे_सी_बी नजर आ रहा है।

रूम के अंदर सूर्य की किरणें आती हुई नजर आ रही है तथा यहां एक छोटा सा बछड़ा भी है।

यहां एक पोस्टपोस्टर में तेजाब कैस्ट्रॉल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दरवाजे का डिजाइन पीले रंग से किया गया है।